एक ग्राउंड टाइप का दिखाया जा रहा है जिनमें बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्सो को दिखाया गया है कुछ स्टूडेंट्स साइड में बैठे हुई।

एक रूम टाइप का दिखाया जा रहा है जिनमें एक लड़के को दिखाया जा रहा है जो कि व्हाइट कलर का टी-शर्ट पेहने हुए ब्लैक कलर का जींस पेहने हुए ऊपर पे --

एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखाया गया जिनमें बहुत सारे पौधे फूल वूल के कांच वांच लगा दी गई हैं।

एक ऑफिस टाइप का दिखाया गया है जिनमें की काफी सारे मशीन है वायरिंग का काम दिखाया गया है ये वेंटिलेटर लगाए गए हैं।